उसके हाथ में निला फोन भी है।

एक मेज़ भी रखी हुई है।

लाइट भी दिख रही है एक तार भी दिख रहा--

चार साड़ी ऊपर रखी हुई है।

और यहां पर तार भी लगे हुए हैं।

सामने गुब्बारे भी दिख रहे हैं।

और एक व्यक्ति अंदर समान के पास खड़ा है।

और वाटर कूलर भी है।

एक साइकिल भी है और एक व्यक्ति लाल बुसेट में खड़ा है।

यह मिस्त्री गाड़ी को ठीक कर रहे हैं।

और यहां पर सरिये भी है।

ये भी दिख रहा है।

और वो कुछ चप्पलों के डिब्बे भी रखे हुए हैं।